एक एटीएम है एसबीआई एटीएम उसके बाहर एक --

लड़का खड़ा हुआ हैं पैसा निकाल के पैसा से अंगुली दबा कर ऐसे पैसा लिया हुआ हैं ।

अच्छी लग रही ये सब बहोत अच्छे से भी बनाया हुआ है।

टाइल्सें पे लाइटें लगे वो काफी देखने में--

वॉचमैन बड़े टेंशन में बैठा हुआ है इसका लाइटिंग डिजाइने --